बहोत सारा चेयर दिखाई दे रहा है।

और कुछ चेयर दिखाई दे रहा है।

एक आदमी रेड कपड़ा में दिखाई दे रहा है।

मुझे खुला हुआ दो दुकान दिखाई दे रहा है।

इसमें मुझे चार चेयर दिखाई दे रहा है।

मुझे ये पिक्चर में एक लंबा सा ब्रिज दिखाई दे रहा है।

बीच में एक गाड़ी दिखाई दे रहा है।

रस्ता का बगल बहुत सारे पेड़ लगाया हुआ दिखाई दे रहा है।

मुझे एक दुकान दिखाई दे रहा है।

मुझे इसमें एक रास्ता दिखाई दे रहा है।

ये तीन गाड़ी दिखाई दे रहा है।

एक लड़का दिखाई दे रहा है।

पिक्चर में छे लड़के दिखाई दे रहा है।

घर ऊपर बैठा हुआ पांच आदमी दिखाई दे रहा है।